और इस दुकान में सभी प्रकार के सुविधाए भी उपलब्ध है।

इस मंदिर में हमेशा पार्षद का आयोजन किया जाता है।

इस दुकान में लेडिस एवं जेंट्स के भी कपड़ा मिलते हैं।

यहाँ पे सभी प्रकार के छोटे-बड़े लोग आते है।